एक महिला एक पुरुष जा रहे है।

यह एक रोड है जिसमें की सब क्रॉस कर रहे हैं साइकिल भी नजर आ रहे हैं कुछ बाइक भी नजर आ रहे हैं कुछ उम्म गाड़िया दिखाई --

ये एक बयूटी पार्लर है जिसमें आदमी औरत के बाल काट रहा है लड़का औरत के बाल काट रहा है दूसरा लड़का कोई काम कर रहा है ऊपर लाईटे दिखाई दे रही है मशीनेे रखी हुई है।

ये एक होटल हैं जहाँ के बाहर कुछ आदमी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं दो गाड़िया खड़ी हुई हैं गेट होटल का खुला हुआ दिखाई दे रहा हैं।

मम मम ये एक बर्फीली जगह है जहाँ यहाँ जमीन पे बर्फ पड़ी हुई है और पेड़ मम सूखे दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग बर्फ पे चल रहें कुछ लोग फिसल रहें हैं।

और ये एक दुसरो को प्रसाद खिलाते हुए दिखाई दे रहे है।

इनमें एक मूर्ति भी रखी हुई दिखाई दे रही है।